और पहाड़ों के बीचम बीच कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं।

और बराबर साइड में कुछ हरियाली भी खड़ी हुई है।

झंडे के नीचे दो आदमी भी खड़े हुए हैं।

और टिकटो के लिए कुछ महिला भी खड़ी हुई है।

और एक ही आदमी बैठा हुआ है।

यह एक इशू मिशु का आश्रम है।

और बराबर साइड में एक आदमी वीडियो भी बना रहा--

यह एक बहोत ही बड़ा बैंकट हाउल है इस बैंकट हाउल के अंदर गोल गोल कुछ मेजे भी पड़ी हुई है।

और एक पंखा भी लगी हुई है।

और घर के बाहर एक पेड़ भी खड़ा हुआ है।

अउर दो कुर्सियां भी पड़ी हुई है।

और बराबर साइड में बहुत सारी अलमारियां भी रखी हुई है।

दुकान के बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और ग्राउंड के आसपास बहोत सारे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

और नहर के बराबर साइड में कुछ हरियाली भी खड़ी हुई है।

और रेल की बराबर साइड में दो आदमी भी जा रहे हैं।

यह एक बहुत ही अच्छी दुकान है इस दुकान के अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

यह एक बहोत ही लंबी चौड़ी दुकान है।

जैसे की वाशिंग मशीन कूलर फ्रिज और बहोत ही अच्छी अच्छी लाइटे भी लगी हुई है।

बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें भी लगी हुई है।

और दुकानों के अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

और मेज के ऊपर शीशों के बॉक्स भी बने हुए है।

और कुछ आदमी भी बने हुए है।

और बहुत सारी लोहे की विंडो भी लगी हुई है।